स्कैन मशीन के बगल में एक ठेला भी खड़ा हुआ है और ये ठेला --

और इस विद्यालय में कई सारे बड़े-बड़े लड़के पढ़ने आते हैं और इस विद्यालय के अगल-बगल कई सारे गमले वगैरा भी लगे हुए हैं।

और इस मंदिर के अगल बगल कई सारे हरे-भरे पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं और इस नदी के बगल में कई सारी हरी बड़ी-बड़ी चट्टानें भी हैं।

और इस नदी किनारे कई सारी बोट वगेरा डली हुई --